पास के अंदर रोड के ऊपर आ व्यक्ति चलते हुए दिखाई दे रहे हैं और बिल्डिंग्स हैं एक जनरेटर लगा हुआ है।

यह मिठाई कि शॉप है जिसके अंदर पहली रो के अंदर चार टाइप की मिठाई है सेकंड रो के अंदर --

यह पुरानी कोई कलाकृति लग रही है पत्थर कि बनी हुई है।

एक नाव का दृश्य हैं जो सायद आधी पानी के अंदर आधी जमीन के ऊपर है इस नाव ऊपर दो व्यक्ति खड़े हैं जो सूरज को हाथ दिखा रहे हैं।

पास के अन्डर एक लट्ठा खडा है और पेड़ पौधे खड़े है।

साइड के पीछे कि साइड बहुत बड़ा मार्केट लग रहा है और बहुत सारी व्यक्ति शॉपिंग कर रहे हैं।